और है ये झोपड़िया बनी है झोपड़ियों कलर क्रीम कलर है और बहोत सारी विंडोज लगी हुई है।

बहुत सारे पानी हैं बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे बच्चे हैं और वाइट कलर की चेयर लगी हुई है और वाइट कलर की --

और येलो कलर की दिवारे हैं दीवारों कलर पीला है और बहुत सारी बाइक रखी हुई है बाइक का कलर काला --

और बलूंस लगे हुए हैं बलूंस का कलर व्हाइट और पिंक है फैन लगे हुए हैं और ऊपर बेसमेंट लगा हुआ है फर्श बना हुआ है।

बहोत सारी विंडो है विंडो में बहोत सारी विंडो है।

इस फोटो में मुझे एक रूम मिल रही है और जहां पे कांच है।

बहुत सारी चेयर्स हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ऊपर छत है बहुत सारी चेयर रखी हुई है बहुत सारे पेड़ पौधे --

इस फोटो में मुझे एक महल दिखाई दे रहा है जहां पर बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग का कलर ऑरेंज है और व्हाइट है बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।

बहोत सारे फ्लावर्स हैं बहोत सारे बूट रखे हुए हैं बहोत सारे पेन रखे हैं पलड़े रखे हैं।

बहुत सारी चीज़ है ऊपर पर्दा लगा हुआ है और पेड़ पोधै हैं ड्रम हैं बहुत सारी बाइके गाड़ी --

छत का कलर सफेद कलर है रैलिंग्स लगी हुई है रेलिंग स्टील की है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

इस फोटो में एक रुम दिखाई दे रहा है।

बैलूंस है बलून का कलर येलो और पिंक है ब्ल्यू कलर का है टाइल्स लगी हुई है।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

जो कि खेल रहे हैं दुकान की शटर है जो कि ग्रीन कलर की है।

बहोत सारे लोग हैं जो कि नीचे बैठे हुए--

बहोत सारी पॉलीथिन है बहोत सारे पेपर लगे हुए हैं पेपर का कलर पीला ऑरेंज और ग्रीन है।